वहां की सुंदर मे जंगल दिख रहे है जहां पे बहोत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं।

बहोत सुंदर ये रस्ता भी दिख रहा है बहोत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े झाड़ियां हैं यहां पर और वो फूल तो बहोत ही सुंदर दिख रहा हैं व्हाइट वाला।

काम कर रहे है बहोत अच्छे से कर रहे हैं।

कुछ लोग इसे सजा रहे हैं भगवान की मूर्तियां रख रहे हैं यहां पर नीचे बहोत सारे लोग जमा है लेडिस जेंट्स --

एक ट्रेनर है वो सब कुछ सीखा रहा है कैसे क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से।